यह एक बिल्डिंग है जो किसी सरकारी ऑफिस का बिल्डिंग लग रहा है।

एक आदमी वाइब्रेटर चला रहा है जिसमें सीमेंट से इसको वॉल दीवाल खड़ा किया जा रहा है।

ऑफिस है जिसमें बहुत सारा केबिन बने हुए हैं केबिन नीला रंग के है।

विद्यालय के बाहर बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं दो साइकिल लगे हुए है दो कार लगे हुए हैं।

और एक बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर डीजे का यह साउंड सिस्टम रखा हुआ है।

ग्राउंड बहुत बड़ा है ग्राउंड के पीछे में स्टेडियम बना हुआ है।

यह फूल माला की दुकान है।

चार पाया वाइट रंग का है।